गमलों के पौधों के ऊपर हरे रंग की--

एक मेडिकल शॉप दिखाई दे रही है।

एक अं महल दिखाई दे रहा है।

सोफे भी लगे हुए दखाई दे रहे हैं और--

कारों के पास दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

ऐ गाड़ी की लाइने भी जाती हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें--

वो पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक कलोनी दिखाई दे रही है।

ल्या रहे दखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक गौशाला दिखाई--

इस पिक्चर में हमें एक प्लेट दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट है।